यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी दिख रहा है बांध के यहाँ पे है यहाँ पर बहोत सारे पत्थर डले हुए हैं छोटे-बड़े यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड पहाड हैं सामने भी पहाड दिख रहा है पहाड़ पे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस इमेज में हमें एक तालाब दिख रहा है तालाब के यहां पर बाउंड्री वॉल बनी हुई है।

पेड़ लगे हैं अंदर कान्च का बना हुआ है इसके ऊपर थोडी सी लकड़ी भी लगी हुई है ब्राउन कलर की ।

यहा पे कुछ पेड़ येल्लो कलर की भी है।

इस इमेज में हमे एक बहोत बड़ा बुके दिखाई दे रहा है जिसमें रेड कलर के बहोत सारे रोजेज लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ पत्ते भी लगे हैं बुके में ।

इस इमेज में हमें एक रोड दिख रहा है रोड सीमेंटेड बना हुआ है रोड के दोनों ईट वाइट कलर से लाइनिंग बनी हुई है।

हम पे बोहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं हम पे थोड़ी थोड़ी जगह में सूरज की रौशनी दिख रही है यह दोनो साइड पेड़ लगे हुए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड ।